जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहां पे दिन का समय है और यहां पे बहुत सारी धूप है पेड़ हैं और बहुत सारे घर है जो अभी बन रहे हैं कुछ बन चुके हैं ओर जो धूप हैं वो बहुत तेज हैं दिन का समय है।